व्हाइट कलर का बड़ा सा लोहे का पाइप देखने को मिल रहा है लोहे से पाइप मे मुझे--

ये मुझे ग्लास देखने को मिल रहा है मुझे टेबल पे टिशु पेपर देखने को मिल रहा है पीछे में मुझे बैलून दे --

मुझे यहाँ पर सूर्य देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे बच्चे देखने को मिल रहे हैं बच्चे ने नीला रंग का शर्ट पहना हुआ है।

पानी मुझे काला रंग का देखने को मिल रहा है साइड में मुझे एक--

पीछे में मुझे एक घर देखने को मिल रहा है घर के बदल में मुझे यहाँ पर तार का पेड़ देखने को मिल रहा है पीछे में मुझे--

मुझे यहां पर नीचे में लाल रंग का फर्श देखने को मिल रहा है लाल रंग के फर्श बगल में मुझे--

दो इंजन देखने को मिल रहे हैं हमें पीछे में आसमान देखने को मिल रहा है।

दीवाल देखने को मिल रहा है ऊपर में मुझे बहुत सारे लाइट देखने को मिल रहा है साइड में मुझे--

गेट देखने पर मिल रहा है जिसे कला रंग से पेंट किया गया है उसके साइड में मुझे दो--

पिलर देखने को मिल रहे हैं जिसे लाल रंग से पेंट किया गया है अन्दर में मुझे मंदिर ।

वो मिल रहा है नीचे में हमें एत व्हाइट वाला बालू चिकनी बालू देखने को मिल रहा है चिकनी बालू ते बदल में मुझे --

मोटरसाइकल देखने को मिलता है वहीं पे मुझे ईंटा देखने को मिलता है साइड में।

के ऊपर एक छोटा सा पोस्टर छटा हुआ है हमें वो पिलर सा--